इधर हमको एक सड़क दिख रही है जिसमे ऊपर गेट ।

दिख रही है ऊपर ब्लैक एंड वाइट और--

हुआ है और सामने दीवार पर सड़क का चित्र बना है दो एक साइकिल और एक--

कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक लाल सफेद छतरी लगी हुई है और नीचे--

सीढ़ीयां बनी हुई है जिनमें काले कलर की रेलिंग बनी है कत्थई कलर की सीढ़ियां है और दूर बहुत सारे पेड़ --

नीचे हरे चटाई बिछी है अंदर बहोत सारी कुर्सियां--

लोहे की जाली लगी हुई है जो सफेद और कत्थई है जिस पे--

और सफेद कलर की हैं साइड में नीले कांच लगे हुए है ऊपर और नीचे--

रखी हैं जिनमें छोटी बड़ी मछलियां रखी हुई हैं सामने एक आदमी बैठा है जो काले कलर के कपड़े--

फूलों के सफेद थैले रखे हुए हैं जिसमें किसी में लाल और ऑरेंज और--

कलर का है जिसके ऊपर नीले कलर से ए_आर_एम चर्म रोग अस्पताल--

यहां हमको एक बड़ा हॉल दिख रहा है जिसमें नीचे--

एक साइड प्लेट रखी हुई हैं और दो गुलदस्ते--

यहां हमको एक स्टेज दिख रहा है जिस पर एक--

झालर बनी है पीछे पीला पड़दा लगा हुआ हैं नीचे--